साइकिल की दुकान में एक इंसान साइकिल पर सवार हो कर चला कर देखने की कोशिस कर रहा है की उसे जिस बच्चे के लिए साइकिल चाहिए वो सारे फीचर्स साइकिल में है या नहीं है।

बंद किया जा रहा है।

लाइटिंग की व्यवस्था की गयी है तथा नीचे ग्रीन घास की व्यवस्था जमाई गयी है।

गुरु का स्थान पूजनीय बताया गया है जिसे गुरु को आदर सम्मान के साथ घर में प्रवेश किया जाता है तथा स्थान --

दो छोरा है ये प्रसंग खेल कर रहे है क्योकि वो वहा के --

छोटे बच्चे स्कूल में डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं एक अध्यापिका उन्हें आगे से खड़े होकर पोस्चर बनाना और हाथों के और पैरों के मूवमेंट्स को सीखा रही है।

एक तरह के दर्शय का समायोजन कर ले तो वहा खड़े हो कर एक दर्शय को खींच कर अपनी यादो --

चर्च के अंदर सुंदर-सुंदर मंदिरों के द्वारा आयोजन कर दिए जला रहें हैं जिससे वह इस प्रसनता का अनुभव कर रहें हैं।

एक व्याक्ति नाई की दुकान पर खड़े होकर अपना सामूहिक चित्र ले रहा है तथा उसके द्वारा उसके साथ खड़े हुए प्रिजनो का चित्र ले कर है वो उस समय की यादें सामूहिक चित्र अपने मोबाइल में सेव करके रखना चाहता है।

ताकि वो भविष्य वो इन चित्रों समायोजन देख सके और अपनी यादों को दुबारा दोहरा सके इसलिए उसका मेन उद्देश्य ये--

आंनद ले रहे है तथा पानी की बौछारों के ऊपर से खड़े हो कर खुशी का आनंद अनुभव कर रहे है क्योकि हमारे देश में जितनी भी नदियाँ है उनका पानी स्वच्छ --

इसके द्वारा किसी चीज़ का प्रदर्शन किया जा रहा है तथा उसके पीछे एक बुलंद इमारत भी खड़ी हुई है उसके सामने एक बाइक निकल के जा रही है इस तरह का चित्र आवरण हो रहा है।

ताकि चाय पीने वाले आ के चाय पी सके और कुछ खाने की वस्तु खाने वाले व्यक्ति आराम से खड़े होकर सही सुफ्फिसिएंट रूप से खा पी ने की व्यवस्था का प्रतिबन्ध कर सके।